ये छत टीन की हैं एक दम सामने एक बाइक खड़ी है।

दाई तरफ एक बड़ा लोहे का खंबा है।

दोनों तरफ वस्त्र हैंगर में अच्छे से लगाए हुए हैं।

तस्वीर एक मस्जिद का है ऊपर बोर्ड पर उर्दू में कुछ लिखा है।

बाई तरफ काउंटर जैसा दिख रहा है।

पीछे कुछ पाइप भी है।

अगरबत्ती और मोमबत्ती जल रही है।

पीछे एक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है।

चारों तरफ ईटों की जोड़ाई की जा रही है।

वृत्त के आकार की रंग बिरंगे रिंग रखे हुए हैं।

व्यक्ति ने लाल टी शर्ट और सफेद पैन्ट पहना है।

सामने एक नाव है जिस पर दो लोग बैठे--

सामने जूस का काउंटर है इस पर कोकाकोला पेप्सी फेंटा इत्यादि जूस की बोतलें है।

पीले रंग का झूमर भी है।

कुछ और बिल्डिंग्स भी है।

सामने बहौत सारी कुर्सियां लगी है।